यह एक ग्राउण्ड है जिसके बीच मे एक सरकल तथा तार की रेलिंग लगाई गई है जिसके ऊपर--

गेट के बगल मे एक वाटरपार्क है जहा बहुत सारे फव्वारे निकल रहे है साइड मे एक गुम्बद बना हुआ है तथा आस-पास घास पूस व पेड़-पोधे लगे हुए है।